पीछे मैं कुछ घरों को भी देख पा रही हूं।

साइड में मैं एक सूखा हुआ छोटा सा पेड़ देख पा रही हूं।

को भी देख पा रही हूं आस पास कुछ पेड़ है।

यहां मै बहोत सा बालू का ढेर देख पा रही हूं।

जहां पे सामने मुझे एक ट्रक पे एक ट्रैक्टर लदा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे वाले पे जाने के लिए अंदर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं।